अ स्व. शुभम प्रशाद मुखिया जी की ये पिक्चर हैं और इस पिक्चर में --

ये पिक्चर किसी बर्तन भंडार की हैं जिसका नाम राधे-राधे ज्वेलर्स भंडार हैं।

ये पिक्चर जो काफी सुन्दर दिख रही है |

ये पिक्चर बुद्ध भगवान की मूर्ति की है।

बौद्ध धर्म में बहोत सारी चीजों को बताया गया है।

पिक्चर काफी सूंदर है।

इस पिक्चर में इस पिक्चर का कलर काफी व्यू अच्छा दिख रहा है।

और हुंडई शोरूम को भी दिखाया गया हैं।